इस मे हम देख सकते है हमे यहाँ एक आदमी नजर आ रहा है जिसने व्हाइट कलर की टोपी पहन रखी है प्लास्टिक की चश्मा भी लगा के रखा है फेस पे उसके स्माइल है हैंड्स को फोल्ड करके रखा है।

इस पिक्चर हम देख पा रहे है हमे एक ब्लैक टी-शर्ट मे जीन्स पहने हुए एक लड़का बड़े बड़े पत्थरों के सिमेंटेड आर्टिफिसियल बने हुए बोक्सेस से उसपे बनते हुए चलते हुए नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में हम देख सकते है यहाँ हमे एक पिंक से टी-शर्ट में एक लड़का नजर आ रहा है जिसने ब्लैक ब्लू सी पेंट पहनी है चप्पल पहनी हुई है।